यहाँ पर दो राक्षश की मूर्ति है जो बहुत ही भयानक दिख रही है।

इस मूर्ति का कलर जो गोल्डन कलर का है इसके उपर एक छतरी सा है जो बहुत ही अद्भुत बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है।